गोल गुम्बज सा कुछ बना हुआ है चार पिलर के साथ।

किसी नगर समिति नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के बाहर का द्रश्य नजर आता है।

वो वो भी एक दुकान का पिक है जिसके ऊपर बोर्ड लगा है ब्राइट लाइन ड्राई क्लीनर्स फाइन ड्रायरस डाइयर्स एंड ड्राई क्लिी क्लीनर्स ।

एक मुस्लिम धर्म का मस्जिद ही नज़र आ रहा है मगर समझ नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर उर्दू में कुछ बोर्ड लगा हुआ है।

चित्र में दो बसे दिखाई गयी है एक बस --

इस दृश्य में जर्दा फैक्ट्री का दृश्य दिखाया गया है इस फैक्ट्री का नाम है --

इसमें तीन-चार मंजिला बिल्डिंग है और सबकी छोटी-छोटी खिड़किया नजर आ रही।

अंदर का दृश्य है अंदर की --

खड़े हुए है एक दुकान है एक कुछ और है।

तीन आदमी बैठे हुए नजर आ --

इसमें दूकान का दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर दो दुकाने हैं दोनों भी किराना का दूकानें हैं।